यह एक पिक्चर है जिसमें की एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने गर्दन झुकाई हुई है।

नीचे वाइट कलर का पेंट हुआ है तो बीच में कुछ पिंकिश है।

यहां पर ऊपर भी अलग-अलग शेल्फ बणे हुए हैं जिसमें अलग-अलग डब्बे रखे हुए हैं।

यह एक पिक्चर है जिसमें की सड़क पर एक हरे रंग का रेडा खड़ा हुआ है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और एक हरे रंग की जैकेट पहने हुए एक व्यक्ति पीछे किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से कुछ बातचीत कर रहा है।

यह एक पिक्चर है जो कि दिखाई पड़ने पर किसी मैदान की नजर आ रही है जिसमें थोड़ी जगह छूटी हुई है और थोड़ी जगह पर हरी हरी छोटी छोटी घास दिखाई दे रही है।

ऐसा लग रहा है जैसे ये झांकियों का प्रदर्शन सा हो रहा है।

यह पुल पर अलग अलग तरीके का डिजाइन बना हुआ है और पीछे कुछ बहुत ही घने एवं विशाल से पेड़ भी दिख रहे हैं।

सामने ही एक आदमी भी बैठा हुआ है जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है।

पीछे एक एल_इ_डी भी लगी हुई है और आदमी के पीछे एक कुर्सी और है जो कि खाली पड़ी है और उसी के सामने एक शिशा भी लगा हुआ है।

पीछे पानी ही पानी दिख रहा है जिसमे दो नाव भी दिख रही है।

यह दुकान बहोत ही बड़ी है और इसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर श्री रतिराम जी ज्वैलर्स लिखा हुआ--

यह सामान कुछ बिजली के उपकरणों जैसा दिख रहा है।

यह एक पिक्चर है जो की दिखाई पड़ने पर किसी बिल्डिंग या किसी घर की छत की नजर आ रही है जिसपे बैलूंस लगाएं हुए हैं बीच में कुछ झालरे भी है।